दिए गए चित्र के अनुसार यह जो चित्र हमारे सामने है।

सामने एक बड़ी सी फ्रिज रखी हुई है और सीढ़ी ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है।

दिए गए चित्र के अनुसार यह चित्र जो है एक स्टेडियम का चित्र है जहां पे दौड़ने वाले धावकों के लिए लाइन बनाई हुई--

जो खड़े होते हैं जो उम्मीदवार--

आसपास बहुत अच्छे पेड़ पौधे वादियां हैं।

दिए गए चित्र के अनुसार यह चित्र एक मछली मार्केट का है।

दिए गए चित्र में एक चित्र ऐसा हमारे सामने आए--

कुछ ऑटो रिक्शा आ रहे है आस पास लंबी लंबी और पेड़ पौधे है आसमान में बादल छाए--

एक तलाब जैसा दिख रहा है तालाब के पीछे बहोत सारी हाउसिंग सोसायटी दिख रही है जो छोटे छोटे घर है और जिनकी जो--

हमारे सामने अगला जो चित्र प्रस्तुत है वह एक किराने दुकान का है।

बहुत सारे सामान हैं जो एक्स्ट्रा जो रखे हुए हैं स्टोर रूम जैसा।

पंजाबी ढोबा होने के कारण यहां पे लस्सी और पराठे तो--

जो वो भी कलर के साथ में बहोत मैच कर रहा--

रेस्टोरेंट में पेंट किया गया है और ग्रे कलर की उसकी छत है।

और नीचे लॉन में घास लगी हुई है और कुछ पौधे बड़े भी है।

इसमें राउंड राउंड में चलना है और लाइन से चलना है और अपने लाइन पे चलना है।

और कुछ आपस में बातें कर रहे हैं शायद ये नमाज खत्म हो चुकी है।

ये दरगाह का भी चित्र हो सकता है जहां लोग--

और डेकोरेशन है नीले कलर के पर्दे से बनाए गए है।

सामने बहोत सारी दवाइयां जो है जमी हुई है।

और दो खिड़की है जो काफी सुंदर लग रहा है दीवाल पे पोस--

और ये एक सेमिनार एवं राजकुमार कॉलेज का है यहां पे स्टूडेंट्स बैठे हुए है राजकुमार कॉलेज है छत्तीसगढ़ में है।